ये चित्र में हम्थे एक बाड़ू डोकुरु दिख्याणा लग्युं जेमा हम्थे बहुत सारी पत्ता गोबी च दिख्याणी लगीं।

ये चित्र मा हम तैं एक बड़ी दुकान दिखेण लगीं जै का भीतर हम तैं कुछ शीशा कू एक जगह दिखेण लगीं जै का भीतर हम तैं बहुत सारी मिठाई दिखेण लगीं।

ऐंच फणि हम तैं वजन नापणे मशीन दिखेण लगीं ऐंच फणा कुछ डब्बा डाब्बान दिखेण लग्यां कुछ ब्रेड का पैकेट दिखेण लग्यां।

ये चित्र मा हम तैं एक बड़ु ड़ूंगा कू पहाड़ दिखेण लग्युं जै का बीच एक ड़ूंगा की सीडी छ बणि जफणा हम तैं बहुत सारा ड़ूंगा ड़ांगा छ दिखेण लग्यां।

ये चित्र मा हम तैं एक बड़ी दुकान दिखेण लगीं जू दिखेण छ फूल की दुकान लगणी जफणी हम तैं कुछ माला-मूलान दिखेणी।

में चित्र में हम्थे एक बड़ी दुकान दिख्याणी लंगी जे के भीतर हम्थे बड़ी-बड़ी अलमारी दिख्याणी लंगी जो सफ़ेद रंग च यूँ।

दिवान का फने बटी हमथे एक छोट्टु सोपा दिखेण लग्यूं जैका अगाड़ी एक मेच च लगी पैथर हमते एक फोटो भी दिखेण लगीं अ किनार बटी एक पर्दा भी दिखेण लग्युं।